मुझे इस फोटो पर रेड कलर के बिछन दिखाई दे रहा--

शुद्ध शाकाहारी चंदिया बाईपास दिखाई दे रहा है।

तीन कांच दिखाई दे रहे हैं।

दो रेड कलर की चेयर दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं।

दिखाई पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर मेलाई दिखाई दे रही है।

कुछ चट्टान दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर दो गमले दिखाई दे रहे हैं।

एक बस दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर कुछ निम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।